बाहर हमें एक मूर्ति नजर आ रही है।

रेतीले मिट्टी दिखाई दे रही है साथ ही हमें कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।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

और हम को सीधे खंभों को देख पा रहे हैं।

कुछ मजदूरों को देख रही हैं।

साथ ही सामने एक टी_वी जैसा कुछ नजर आ रहा है।

यहां हमें सामने कुछ दुकानें नजर आ रही हैं।

साथ ही हमें एक हरे रंग बड़ी सी पाइप बिछी दिख रही है।

यहां पर हम कुछ लोगो को भी देख पा रहे हैं।

साथ ही लोहे का कुछ रिंग जैसा बना नजर आ रहा है।

कुछ लोग यहां पर नजर आ रहें हैं साथ ही एक बिजली का खंबा नजर आ रहा--

सामने एक ठेला जैसा दिख रहा है।

यहा पर हम एक मैदान को देख रहे हैं।

मैदान पर बहुत से लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

जिस पर हमें बहोत से लोग नजर आ रहे हैं।

लाल पीली नीली और भी हरी रंग की बसें खड़ी है।

यहां पर रेती और श्रीमेंट के घोल बिछे हुए हैं।

और लोहे की छड़े निकली हुई दिखाई दे रही है।